अड़े कई आदमी बैठे सें और बाहर बहोत ज्यादा घाम है।

यहां पर बहुत सारी लाइटें हैं यहां बहुत सारे टी_वी हैं।

कई लोग बैठे हैं। कस्टमर आ रहे हैं। पास में और भी दुकान है बोर्ड पे लाइट जस रही है।

और एक महिला खड़ी है अपनी बाइक के पास--

यहां एक किराए का कमरा है यहां पर पंखे लग रहे हैं दोनों कमरों में लोग है।

बहोत सारी मिट्टी पड़ी है ईंट पत्थर है।

फिटनेस का बोर्ड है बड़ा सा और येलो रंग की मशीने है बड़ी बड़ी--